मुझे यहां पर बहुत सारे पोस्टर चिपकाए हुए भी दिखाई दे रही है।

मुझे यह कमरे में बहोत सारे कार्टून के बक्से नजर आ रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर पर तीन लोग टेबल के में बैठे हुए दिखाई दे रही है।

और एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड नजर आ रहा है।

पीछे में मुझे बहुत सारी ऑटो खड़ी हुई नजर आ रही है।

मुझे यहां पर दो लाल रंग के चेयर दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे साधु बाबा बैठे हुए नजर आ रही हैं।

यहां पर जैकेट भी लगाई हुई है।

मुझे इस तस्वीर पर एक कमरा दिखाई दे रही है।